सीढ़ियाँ दिख रही हैं एक घर है जो काफी--

पुराना टाइप का है एक घर है जो कलर किया हुआ है घिया कलर पे--

डॉक्टर का क्लीनिक है जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है बहुत सारे पेड़ हैं।

बहुत से आदमी बैठे हुए हैं चेयर पे कुछ आदमी पीछे खड़े हैं एक आदमी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ऊपर फॉल सेलिंग --

बहुत सारे आदमी खड़े हैं एक आदमी बच्चे को लेकर के जा रहा है सीढ़ियां है।

एक लेडीज और एक बच्चा खड़ा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं भगवान की बगल में --

दिवाल है ईंट का बना हुआ है नीचे पक्का है और भी बहुत सारे मशीनें खड़ी हैं।

अ बाहर में बहुत सारे जूते चप्पल भी खुले हुए हैं मार्बल का काम किया हुआ है।

एक शॉप टाइप का कुछ दिख रहा है जिस पर एक टेबल है टेबल पर एक लैपटॉप है।

है बैलून से ऑरेंज ब्लूज में तीन-तीन चार-चार करके उसे चिपकाया गया है।

एक हॉल टाइप का कुछ दिख रहा है जिस पर एक कैमरा लगा हुआ दो-तीन सीलिंग फैन चल रहे हैं।

और पीछे पे तो एक बड़ा सा मूर्ति खड़ा है। जो कत्था पे एक मछली है एक कॉकरोच है उसके पीछे दीवाल है।

छोटा मोटा शॉप टाइप का दिख रहा है जिसमें बहोत सारे सामान है कुछ बलूंस रगे हुए हैं तीन तीन--

एक घर दिख रहा है कुछ पोल दिख रहे हैं उसमें तार लगे हुए हैं पोल --

दो तीन तरह के दो-तीन तरह के हैं अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट कुछ किताड़ी के गाछ है जो सूख चुके--

रेड सूता वाले पिंक सूता वाले कत्था सूता वाले वो सब रस्सी पे बाँधे हुए हैं।

बगल में एक और छोटा सा गेट है एक बड़ा सा ब्रिच है दो-तीन ग्रीन कलर के पा--

नीचे सॉस के डब्बे रखे हुए चिली सॉस है छोटे-छोटे टोमेटो सॉस है बड़े टोमेटो सॉस है मार्बल का काम किया हुआ --

बड़ा सा स्टेडियम टाइप का कुछ दिख रहा है ग्राउन्ड टाइप का है।

पर्दा लगा हुआ है छोटे-छोटे घास है हरे कलर के कुछ आदमी देख रहे हैं कुछ खड़े हैं।

गाँछो से सजाए गए हैं रेड रेड गमला है और बड़े बड़े वृक्ष हैं।

इस पर कुछ नंबर टाइप का लिखा हुआ है उस कुर्सी के ऊपर भी कुछ कोड के समा--

से घेरा गया है ऊपर में वाइट कलर के बाँस किए हुए हैं।

खिलौनों में है कार रोबोट्स टेडी बियर ए--

ये मोटे और भी कार है जो सब भी कर किया हुआ है बड़ा सा एक रोबोट है।

कुछ खड़े है दो एक आदमी मसाला ले कर के दो आदमी जा रहा है एक आदमी हा--

पाटा लगा हुआ है वो भी प्लस्टर नहीं है।

रेड है पिलर्स दिए हुए हैं और एक बड़ा सा--

सुंदर से डेकोरेट किया गया है बगल में एक घर है एक आदमी का हाफ शकल दिख रहा है।

और पोल टाइप्स का गड़ा हुआ है एक घर टाइप का दिख रहा है वो बच्चों ने--

अह साइबर का दुकान दिख रहा है जो बाहर पे द्वारी पे गेंदा फूल के माला से--

बोर्ड है वायरिंग का काम किया हुआ है बहुत सारे साम--